पेड़ हड़े हरे-भरे दिख रहे हैं।

यहाँ पर बहोत ही अलग-अलग तरीके की --

और जो एक लड़का है वो --

हनुमान जी की पूजा कर रहा है।

बाइक भी खड़ी हुई है।

वो यहाँ पर एक टेबल है जहाँ पर टीचर खड़े होते हैं।

पीछे मंदिर है। शिव जी बैठे है। उनके ऊपर वहाँ पेड़ है।

बहोत ही अच्छा लग रहा है जो उनके गले में साँप पड़ा हुआ है।

बहोत ही भीड़ है यहाँ पे ।

और सड़क है और पेड़ों की सीरत भी है यहाँ पर --

ये पहाड़ी इलाका है। जहाँ से बहोत अच्छा नजारा दिखता है।

गुलाबी और सफेद और यहाँ पर जो लाइट्स लगी हुई हैं तो उनसे बहोत ही अच्छा लग रहा है।

मैरिज होम में बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं। कुछ लोग खाना खा रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं।

वहाँ पर एक पानी का फुव्वारा भी है।

ये टाटा मोटर्स कार शोरूम है। जहाँ पर बाहर तीन कार्स खड़ी हुई हैं।

ये एक मैरिज होम है जहाँ पे बहोत सारी शादियाँ होती हैं।